यहाँ पे ये बहुत अच्‍छा नजारा दिख रहा है नीचे पे गंगा है ऊपर बहुत अच्‍छा-सा गाँव है पूरा पहाड़ जैसा पहाड़ के अंदर जैसा गाँव होगा बहुत अच्‍छा लग रहा है ऊपर आसमान में फॉग छाया है और यहाँ पे छोटा-सा पेड़ है जाे साफ नहीं दिखााई दे रहा है।

और उधर साईड पत्‍थर भी है बहोत ।

यहां पे कुछ लोग खड़े नीचे गढ्ढे में देख रहे हैं और यहां पे जे.सी.बी जो है वो गढ्ढा खोद रही है। पीछे बगल में एक आदमी बैठा है जो अपने हाथ में डंडा है शायद और इधर साईड सरिया का काम चल रहा है इधर साईड जो मिट्टी खोदी है उसको निकाल के साईड में रखा है।

यहाँ पे एक आदमी पलस्तर कर रहा है यहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा होकर एक जगह उसको देख रहा है। और यहाँ पे एक मकान बन रहा है जहाँ पे आदमी खड़ा है वहाँ पे पहले से पलस्तर किया है और उसे खराब कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी मोटर भी लगी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ बंदे इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे दुकान में कस्‍टमर आएं और हम उन्हें सामान दें और हमारी बिक्री हो और यहाँ पे पर कपड़े भी दिखाए गए हैं कुछ-कुछ।

इस पेड़ पे कुछ लगा हुआ भी है फल-सा कुछ दिख नहीं रहा है वैसे साफ लगा हुआ है कुछ पेड़ भी अच्‍छे है बहोत हरियाली है पेड़ो में।

पीछे से लाईट भी लाईट भी अच्छी सी शाईन कर रही है लाईट चमक रही है फिर ये तीनों शाईन कर रहे है एकदम इनका जो बल्‍व है एल.ई.डी जिससे लाईट जलेगी वो भी बहोत अच्‍छा लग रहा है बगल-बगल में वो भी डिजाईन भी रखे हुए है अच्‍छे लग रहें हैं।